एक अन्य सफेद कलर की बस दूसरे तरफ मुह करे दिख रही हैं ऊपर खुला आसमान हैं।

एक प्लेटफार्म के सिरे पर लाल और सफेद रंग की पट्टिया बनी हुई है और बिजली के तार और खंभे भी दिख रहे हैं।

ई ल चर्च लिखा हुआ है।

यहाँ एक पुल बना हुआ है जिसके नीचे सीमेंट के पिलरों से टिका है पीछे हरे कलर के झाड़ दिख रहे है।

यह तस्वीर एक गैरेज की है जिसमें नीले सफेद और लाल रंग का एक बैनर ऊपर लगा हुआ है।

बाउंड्री पर नीले रंग इसे पोता गया है सामने मे हरे कलर का मैदान दिख रहा है।

हरे कलर की घास दिखाई दे रही हैजो बड़ी है और उसके पीछे एक बहोत बड़ा लंबा-सा एक मंदिर दिखाई दे रहा है जो पुराने जमाने का है।

यह तस्वीर एक ई-रिक्शा की है जिसकी चाबी एक व्यक्ति महिला के हाथ में दे रहा है।

दी गई तस्वीर एक दुकाने की है जिसके सामने में दो मोटरसाइकिल खड़ी है दुकान के अंदर कुछ हल्का सा धुंधला सा समान दिख रहा है।

दिख रही तस्वीर एक हाल की है जिस में जर्मन की बनी हुई बहुत सारी चेयर रखी हुई है जिसमें--

और उनके गलों में सफेद कलर के साफे डाले हुए हैं।

दी गई तस्वीर एक दुकान की है जिसमें साधना पार्लर लिखा हुआ है इसके सामने में तीन व्यक्ति खड़े हैं सामने लाल रंग की एक बाल्टी भी रखी है।

सफेद कलर की दो-तीन चेयर रखी हुई है पानी के अंदर बहुत सारे लोग तैराकी कर रहे हैं।

गुंबद नीले कलर का है उनके सामने मे बहुत सारी महिलाए और पुरुष सफेद रंग का कपड़ा सर पर बांधे हुए खड़े हैं जो सभी गुंबद की ओर देख रहे हैं।

बगल में लाल और सफेद रंग से बॉक्स बनाकर दिवाले जैसी खड़ी है।

दिख रही तस्वीर एक बहुत पुराने इमारत की है जिसमे नीचे लाल रंग की एक दुकान दिख रही है।

दुकान के बगल में एक नीले कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है और सामने मे लोहे की गैलरी दिख रही है।

लोहे के रॉड के बने हुए एंगल है पीछे सफेद कलर की एक लंबी सी दीवाल देखी जा सकती है और नीचे सफेद रोशनी दिखाई दे रही है।

जिनके मुंह सामने की तरफ है और पीछे का हिस्सा साफ तौर से लाल दिख रहा है।

बस के पास में तीन-चार व्यक्ति हाथ में बैग लिए दिखाई दे रहे हैं वहीं एक ठेले पर कुछ लाल कलर का सामान रखा है जो दिख रहा है।

बीच में स्टील की रोड का एक एंगल बना हुआ है। पास ही एक व्यक्ति सफेद कलर पायजामा और कुर्ता पहने उस इमारत की ओर बढ़ रहा है।

गेट के बगल में बोहोत बड़ा सफेद और लाल कलर का मकान दिख रहा है जिसके ऊपर में कुछ लिखा है काले रंग से--

ये गार्डन की है जिसमे बहुत सारे पोधो से इसे सजाया गया है जिसमे बड़े-बड़े पेड़ भी लगे है जिसमे नारंगी रंग के फूल--